और चित्र में मुझे रेत रखा हुआ दिख रहा है और ईंटे दिख--

चित्र में मुझे एक घर पर शुभ विवाह लिखा हुआ दिख रहा है।

चित्र में मुझे गोल-गोल बनी हुई बिल्डिंग दिख रही है चित्र में बिल्डिंग का नाम यूनियन बैंक दिख रहा हैं।

चित्र में मुझे कई सारी पटरिया बनी हुई दिख रही हैं।